कार खड़ी हुई है जो दिखाई दे रही है। एक मंदिर बना हुआ है जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक खम्बा गढ़ा हुआ है जो दिख रहा है जिस पर लाइट लगी हुई है यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं।

ट्रेन दिखाई दे रही है। ट्रेन के बाजु में एक खम्बा गडा हुआ है बिजली का जो दिखाई दे रहा है। जिसपर तार खिचे है जो दिखाई दे रहे है। यहाँ पर कुछ हरियाली लगी हुई है। कुछ पेड़ लगे हुए है जो दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक ग्राउंड में कुछ गाड़ियां खड़ी हुईं हैं कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं जो दिखाई दे रहें हैं एक महि ए महिला खड़ी हुई हैं जो दिखाई दे रहीं हैं।

और एक बिल्डिंग बनी है जो दिखाई दे रही है यहाँ पर दीवार पर कुछ बल्ब लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं।